ऊपर बादल दिख रहे है पत्थर दिख रहे बड़े-बड़े घाँस--

ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे जमीन दिख रही है एक ऑटो खड़ी दिख रही है एक पेड़ दिख रहा है बड़ा सा--

घाँस-फूस दिख रही है।

पास में एक खाली नांव दिख रही है उसके पास में रैलिंग दिख रही है कच्ची सड़क नज़र आ रही है।

बादल दिख रहे है रेलिंग्स दिख रही है टंकी नज़र आ रही है पिंक कलर --

नीचे ग्रीन कलर की घाँस नज़र एक स्ट्रैचिंग नज़र आ रहा --

दीवाल दिख रही है जो की स्किन कलर की है पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं बड़े - बड़े घास --

ऊपर बादल दिख रहै है नीचे जमीन दिख रही हैं।

पहाड़ दिख रहे हैं पानी दिख रहे है जैसे की सावर दिखाई दे रहा हैं पीला कलर की लाइट जल रही है।

अलग लगे हुए हैं एक ए _सी का फैन लगा हुआ है।

यहाँ पे टेंट टेंट का पर्दा नज़र आ रहा है जो की ब्लैक एण्ड व्हाइट --

और आस पास बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है एक पर्वत दिख रखा है सामने दूर की ओर--

आवया और टू बेड्स दिख रही है जो की तीन लगी हुई है मस्त दिख रही हैं और एक चार पिलर्स दिख रही है।

लखन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आ रहा है आसपास गाड़ियाँ रखी हुई है स्ट्रीट लिखा हुआ है साइकिल रखी हुई है जमीन रखी हुई हैं।

वाइट गेट दिख रहा हैं।

पीछे गन्दी जमीन दिख रही है जहाँ पर घाँस उग रही है एक--